मटर का छोले है उसमे आलूआ भी रखे हुए है बहुत --

हरा मिर्च भी रखा हुआ है बड़ा पतीला में।

इस पल स्टेज बहुत सुन्दर सजाया हुआ है।

कूल है स्कूल पीला कलर आसमानी कलर से कलर किया --

खुला है खिड़की के पर्दा हरा लगा हुआ बहुत सुन्दर।

बड़ा -बड़ा पेड़े हैं आसमानी दिख रहा है।

कॉफ़ी शॉप है --

प्रोजेक्ट बना रहे है ।--

वहाँ पे लाइटे जल रहा है फूलो से सजाया हुआ है --

उसमे बहुत सारे ड्रेस पहने बच्चे सब है वहाँ पे आसमान है ।

रेड कलर से रंगा हुआ --

बहुत सारी मूर्ती हैंआसमान हैबहुत सूंदर दिख रहे है यहाँ पे --

धुप खिला हुआ आसमानो मे --

वहां पे बगल में कुर्शी एवं आदमी बैठा हुआ है पंडाल बहुत सुंदर --

बॉडी है गेटे भी बंद हैं।

सरस्वती बुक सेंटर लिखा हुआ है बुके के --